यहां गुब्बारों से सजावट की गई है।

इस जगह पर बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जिसमें कुछ सफेद रंग की हैं।

और पीछे उसके एक झूला दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे टीन से बनी हुई है।

और यहां बहोत सारे थमले भी हैं।

यहां पे तार लगे हुए हैं बिजली के--

जिसमें दो तीन स्कूटी का कलर सफेद है।

कांच का गेट लगा हुआ है नीचे पैड़ी काले रंग की है।

पीछे अंदर बोतल रखी हुई है।

इस जगह पर एक लूडरी रखी हुई है।

नीचे पैड़िया है जो लाल रंग की है।

बाइक भी है सामने एक छोटा सा बैनर लगाया है जो लाल रंग का है।

पीछे पेड़ लगाए गए हैं सामने दो तीन खाटे पड़ी हुई हैं।

ऊपर सफेद रंग की लाइटे लगी हुई हैं।

और यहां बहुत सारे व्यक्ति हैं छोटा छोटा घास उगा है।

एक बैठा है उसके पीछे एक सोफा है सोफे के ऊपर एक तकिया है।

एक बच्चे के पीछे पीले रंग के पर्दे भी लगाए गए हैं।